इस चट्टान से बहोत ही अच्छा नजारा दिख रहा है पूरे गांव का नजारा दिख रहा है जहां पर बहोत सारे पेड़--

तस्वीर में गेट कांच का बना हुआ है।

छत सफेद कलर की हैं जिसमें सफेद कलर के लाईट लगे हुए--

और हवाई जहाज के ऊपर का हिस्सा लाल रंग का है।

नदी के आजू बाजू बहोत सारे चट्टान है बड़े बड़े से।

पेट्रोल पंप के बाजू एक पीले रंग की बस खड़ी हुई है।

आजू बाजू मैदान के हरे रंग की घास उगी हुई है आसमान खाली है।

स्टेज के ऊपर सफेद रंग का सोफा रखा हुआ हैं सोफे के आजू बाजू दीवालों को फूलों से सजाया गया हैं।

टेज के ऊपर कार्पेट बिछा हुआ है जियो रंग बिरंगा है।

रंग बिरंगे पौधों के ऊपर फूल लगे हुए है नर्सरी के बाजू बड़े बड़े से पेड़ हैं।